और तीन लाईटस लगे है ट्रक के बगल में एक लड़का खड़ा है ये लड़के ने येल्लो कलर का टी-शर्ट पहन रखा है थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा सा पेड़ है।

यह पिक्चर एक मंदिर के बाहर की है यह मंदिर के बाहर वाइट कलर से पेंट किया गया है यह मंदिर बहुत बड़ी है और मंदिर के सामने एक मूर्ति है।

पिक्चर एक जंगल का है यह पिक्चर में बहुत सारे हरे भरे पेड़-पौधे है यह पिक्चर एक बहुत घना जंगल का है।